ये एक चर्च है जिसके पीछे काफी बड़ा पेड़ है और काफी सारे लोग हैं जो आस पास खड़े हैं।

जीरो ओ पी वन जेड जे उसके साथ एक शॉप है जिस पर महाजय एंटरप्राइज लिखा हुआ है।

सामान रखा हुआ है काफी सारे वॉलेट की जो है टंकीस रखी है हुई हैं मडगाड रखे हुए हैं।

ये एक हॉल है यह हॉस्टल का हॉल है।

और एक इंच का भी सारा रखे हुए है शिवजी की फोटो ल बनी हुई है इसी।

है जिस जो कि ब्ल्यू कलर का--

अ जो शो रेस्टोरेंट हैं उसपे लिखा हुआ हैं स्वाद ऑफ हैदराबाद।

दीवार पर येलो कलर है लगी हुई है।

और आसपास में मिट्टी डली हुई है।

और आसपास काफी सारी दुकानें हैं लोग हैं।

सारे लोग से हैं फोटो खींच पा रहे हैं।

और जिसके पास एक गाड़ी लगी हुई है जोकि ग्रे कलर की है।